यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है जिसके सामने का दीवाल वाइट कलर का है और बगल का दीवाल हल्का ब्लू कलर का है और वहाँ पे पंखा लगा हुआ है नीचे कुछ डिब्बे रखे हुए हैं ब्लू कलर के।

पड़ा हुआ है और पीछे दीवाल व्हाइट कलर का दिख रहा है। टेबल भी व्हाइट कलर का दिख रहा है।

जो वाइट वाइट दिख रही है और सामने में भी कुछ रेक जैसा बना हुआ है उसमे भी कुछ डिब्बा जैसा रखा हुआ है और एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बनी हुई है उसमें बहुत बड़ा बड़ा कांच लगा हुआ है ग्रीन कलर का कुछ वाइट कलर का भी पेंट हुआ है यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिख रहे है यहाँ पे पिंक कलर का एक पत्ता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे टेबल बने हुए है जो ब्लैक कलर के हैं।

और सामने भी कुछ पोस्टरें लगी हुई हैऔर नीचे टाइल्स लगा है। जो ब्लैक कलर का है। और ब्लू कलर का लाइट भी लगा हुआ है।

और एक बोर्ड लगा हुआ है एक पंखा भी लगा हुआ है।

घर है उसमे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे दो बाइक और एक स्कूटी --